जिसमें कि एक औरत दिखाई दे रहा है और दो आदमी दिखाई दे रहा है यह एक पौधे च कपड़े का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें कीमती पौधे कीमत कीमती-कीमती कपड़े दिखाई दे रहे हैं और इस दुकान के साफ सफाई बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही --